एक रास्ते को देख प रहे है। रोड को देख प रहे है। जिसपे हमे कुछ पिल्लर्स जेसे कुछ नजर आ रहा है। जेसे की ए साइड साइड मे लगे हुए है। सीमेंटेड पील्लर्स वह पे एक बिजली के खंभे भी लगे हुए है।

प्लस का शाइन है। वहा पे कुछ दोनों तरफ विंडोज़ सी बनी हुई है। विंडो मे कुछ कोने कोने मे कुछ मूर्ति है। छोटे छोटे से स्टेचुएस ह। और बीच मे कुछ आ राउंड शेप मे रखा हुवा है।